एक दुकान नजर आ रही है जिसका शटर बंद और एक का शटर खुला नजर आ रहा है इसी के साथ दूसरी दुकान का मुझे मिनी शटर खुला नजर आ रहा है जिसके अंदर कुछ काला काला--

सामने की तरफ मुझे एक घर नजर आ रहा है ब्लाक कलर का नजर आ रहा है और इसी के साथ मुझे कुछ खिड्किया वगैरा नजर आ रही है कुछ खिड्किया खुली और कुछ खिड्किया बंद नजर आ रही है।

कम खुला खुला हुआ नजर आ रहा है पीछे की तरफ कोकोनट के कुछ पेड़ नजर आ रहे है।

सामने का रंग मुझे हरे भरे कलर कुछ पीला कलर का नजर आ रहा है एक बोर्ड नजर आ रहा है ब्लॅक कलर का जिसके उपर हॉटेल लिखा हुआ नजर आ रहा है।

सामने की तरफ बड़े बड़े पत्थर बगेरा नजर आ रहे है। उस पत्थर स्क्वायर शेप मे पत्थर छोटे छोटे शे नजर आ रहे है।

सामने की तरफ मुझे कुछ पत्तेसे नजर आ रहे है कुछ पौधे लगे नजर आ रहे हैं रेलिंग के अंदर पत्ते काफी नजर आ रहे है कुछ पत्ते ज्यादा हरे नजर आ रहे है कुछ पत्ते लाइट ग्रीन नजर आ रहे है कुछ पत्ते येल्लो कलर के नजर आ रहे है और कुछ पत्ते मुझे--

सामने की तरफ मुझे कुछ जिम जिम का सामान नजर आ रहा है जिम के इंस्ट्रुमेंट्स नजर आ रहे।

ब्लाक कलर के ब्लू कलर के सामने की तरफ मुझे एक बालून्स का गेट नजर आ रहा है। जिसके ऊपर येल्लो व्हाइट और रेड कलर बालून्स नज़र --

चाँदी के बने हुए कुछ तस्वीर वगैरा रखे हुये और पीछे की तरफ दीवार नजर आ रही है ब्लाक कलर की कुछ डिझा--

और हरी भरी घास काफी ज्यादा नजर आ रही है। सामने की तरफ माउंटेन वगैरा नजर आ रहे है। मौसम काफी अच्छा नजर आ रहा है।

सामने की तरफ हरे हरे हरे हरे हरे कुछ छोटे-छोटे से पौधे नजर आ रहे है बीच में गिलोय का पेड़ नजर आ रहा है जिसके तल पर पानी निकलता नजर आ रहा है पीछे की तरफ झोपड़ी सी नजर आ रही है छोटी सी और उसके पिछे कि तरफ बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे है हर हर से इसके साथ मौसम भी काफी अच्छा नजर आ रहा है।

दूर के तरफ मुझे कुछ हरे कलर के पेड़ और कुछ पेड़ सूखे सूखे नजर आ रहे है और सामने की तरफ पूल तालाब नजर आ रहा है इसके साथ मौसम भी काफी अच्छा नजर आ रहा है खेत के अंदर मुझे एक बच्चा नजर आ रहा है।

सामने की तरफ मुझे एक मंदिर नजर आ रहा है ऊपर की तरफ छोटी वगैरा नजर आ रही है पीछे की तरफ काफी बड़ा सा मंदिर नजर आ रहा है इसके साथ मौसम भी काफी अच्छा नजर आ रहा है।

सामने कि तरफ एक घर नज़र आ रहा है घर के निचे से गेट खुला हुआ नज़र आ रहा है गेट का मुझे ब्लू कलर नज़र आ रहा है ब्लू ब्लू रंग का गेट नज़र आ रहा है निचे कि तरफ दो दो एक सीढि नज़र आ रही है साईड के तरफ एकाद बाइक नज़र आरही है बाइक --

सामने की तरफ मुझे एक खेत नजर आ रहे है खेत के अंदर हरे हरे छोटे छोटे पौधे नजर आ रहे है दो तीन पेड़ नजर आ रहे है।